फसल उपजाया जा रहा है बहुत सारा खेत हैं।

इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। इसमें मशीन लगाये जाता है। जिससे हम लोगों को नेट प्राप्त होता है।